एक आदमी खड़ा हुआ है।

कुछ फ्रॉक नजर आ रही है।

इस चित्र में एक कॉफी शॉप दिख रही है।

इस चित्र में खिलौने की दुकान दिख रही है।

इस चित्र में एक रंगोली नजर आ रही है।

कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

इस चित्र में कुछ पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

एक पेड़ नजर आ रहा है।

कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं।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

सामने शाही दरबार नजर आ रहा है।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

कुछ मोमबत्तियां नजर आ रही हैं।

काफी सारा सामान जमा हुआ है।

मस्जिद के बाहर तिरंगे का झंडा लगा हुआ है।

इस चित्र में बस का अड्डा दिखाई दे रहा है।

काफी सारी बसें खड़ी हुई हैं।

इस चित्र में कैफे दिख रहा है।

पेन और पेंसिल दिखाई दे रहे हैं।

काफी सारे फल रखे हुए हैं।

वजू खाना बना हुआ है।

एक घर दिखाई दे रहा है।

तगाड़ी में सिमेंट भर रहे हैं।

काफी सारे पेड़ दिख रहे हैं।

इस चित्र में एक समुद्रीय टट दिखाई दे रहा है।

ऊपर एक त्रिपाल डली है।

काफी सारा सामान टंगा हुआ है।

इस चित्र में एक नर्सरी दिख रही हे।

ऊपर लाइटें लगी हुई हैं।